गए ऐसे एक ऑरेंज कलर के एक आदमी ने पहना हुआ है जो राखी सेल कर रहा बेच रहा है।

साथ में हरियाली दिखाई गई है आजू बाजू में दो बिल्डिंग्स है एक अ--

नाम है फाई जी एक कोड लिखा हुआ हैं जो समझ में नही आ रहा हैं कि क्या लिखा हुआ हैं।

और एक बाजू में वाइट कलर की प्लास्टिक रखी हुई है।